पेड़ बड़ा लम्बा हुआ सा गया है नीचे भीड़ भी दिखाई दे ही है पिला कलर का रंग भी दिखाई डा हैं।

उस टेबल पे बोहोत सारा सामान नज़र आ रहा है व्यक्ति के हाथ में गिलास है। गिलास में कुछ भरा सा नजर आ रहा है। पंखा-वंखा बोहोत सब सारे दिखाई पड़ रहे हैं बोहोत सारा सामान दिखाई पड़ रहा है।

के पीछे बिल्डिंग भी दिखायी पड़ रही है।